यहाँ पर लाइन से कुछ कार कड़ी रही हेंगी सात-आठ कारे है और वो पीछे खड़ी है दस-बारा कारे हेंगी यहाँ पर।

ऊपर एक आदमी खड़ा हेंगा जोकी कुरता पजामा पहने हुए है और सफ़ेद कलर का और बैंगनी कलर की कोटि पेहनी हुए है।

यहाँ पे पॉट रखा हेगा फ्लावर्स से भरा हुआ पिंक और बिच में जीने है जीने क साइड पे कुछ बना हुआ है बिच साइड में पेड़ पौधे है कुछ कार गाड़िया खड़ी हुयी है।

ब्लू कलर के दरवाजे है यहाँ पर भी एक कार वेन खड़ी हुई है जो व्हाइट कलर की हेगी और इसके उपर एक लाईट लगी हुई है।

एक लड़का खड़ा हेगा जिसके पिछे लगी हुयी है ब्लू कलर क्रीम कलर की।

यहाँ पर एक बड़ासा स्टोर बना हुआ है जिसमे बहुत सारी सब्जिया रखी हुयी है।

यहाँ पे काफी सारे फल भी रखे हुए है काफी बड़ी मात्रा में रखे हुए है यहाँ पे दो खुर्सियाँ रखी हुई है और एक यहाँ पे बड़ा सा हरे कलर का डस्टबिन रखा हुआ है इनका कुछ पंखे लगे हुआ है छत में।